यह रेड ड्रेस मे कितना अच्छा डांस रही है यह देखिए एक हाथ इनका आगे है और एक हाथ बिल्कुल कान के पास है।

यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि ये डांस क्लास चल रही है | इसमे सारे देखिये कुछ कलरफुल ड्रेस में सारे अलग-अलग ड्रेस में --

यहाँ पे आपको भगवान् जी नजर आ रहे हैं जिसमें यहाँ पे आपको सबसे ऊपर कुछ अच्छा सा मंदिर जैसा बनाय दिखाई दे रहा है डिजाइन में और पुजारी जी दीपक लगाते नजर आ रहे हैं ।

और सभी पिक्चर क्लिक करवा रहे हैं| ये पीछे देखिए पुराने जमाने की राजा-महाराजाओ तस्वीरें यहाँ पर लगी हुई है| और ये देखिए हाथ भैया के हाथ में बेबी भी है।

और ये गेट पे लिखा हुआ है आम रस्ता नही है मतलब कि ये कोई आम रास्ता नहीं है ये स्कूल कॉलेज वालो के लिए रास्ता है एक ।